लगभग सभी लोग जलेबी को बहुत पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग इनको खाते हैं।

बैंक का उपयोग लगभग हम पैसा निकालने के लिए या डालने के लिए करते हें। और आजकल सभी जगह बैंक हो गई है क्यू की ज्यादा पैसा हमे घर मे नहीं रखना है क्यू की आज कल बहुत चोरियाँ भी होने लागि हें।

ये कोई मछली बाजार है| यहा पर मछलियाँ बिक रही है।

ये है लड़कियाँ है यह शायद कोई सी प्रतिमा है जो नृत्य के ऊपर से बनायीं गयी हैं इसमें लड़कियां डांस कर रही हैं या डांस या नृत्य की फोटो या कॉपी बताई गयी है।

इन्होंने फोटो निकलवाया है और ये पीछे एक लड़की खड़ी हुई है ये शायद पता नहीं शिव जी की मूर्ति है क्या उसे ये देख रही है ।

और इन लोगो का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है की यहाँ पर बहोत सारी भीड़ पड़ रही है और सर्दी भी शायद बहोत सारी है क्योंकि यहाँ सभी लोग शॉल ओढ़े हुए बैठे--

ये सभी लोग मछली देख रहे हैं परन्तु हमें अपने भोजन के लिए किसी जीव की जान नहीं लेना चाहिए हमें इनको मारना नहीं चाहिए।

और कोई सी पूजन कर रहे हैं पीछे यह भैया यहां पर सेल्फी ले रहे हैं दीदी भी सेल्फी ले रही है सभी को आज कर सेल्फी लेने का बहुत शौक है और यह तो सहना है शायद इसपे शिव भी रखे हुए--

यह कोई से मार्केट का रोड रोड है यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है और ऊपर साइड पुल है यहाँ से सभी लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर--